इस इमेज में एक लड़का है। जो कि लंबी फ्रॉक पहना हुआ है।

बगल में एक बिजली का खंभा है। सामने एक बड़ा सा ऑरेंज कलर की गेट है।

ये एक सेलॉन शॉप है। जो कि काफी रॉयल लग रही है।

इस इमेज में मछलियो की बाजार है जो पानी में रहने वाले कई तराह के जीव हैं और जो कि बिक रहे हैं।

ये एक सेलॉन की शॉप है। जिस में एक बच्चा अपना हेयर कट कराने आया है। जिसने पर्पल कलर का स्टोल लगाया हुआ है। गले --

ये एक क्रिस्चियन प्लेस हैं जीसके ऊपर मूर्ति रखी हुई हैं सामने चार नन हैं जो की वाइट कलर की साड़ी पहनी हैं।

जिनका ब्लू बॉर्डर हैं। और तीन लडकियां सामने देख रहीं हैं और एक निचे देख रही है।